एक चने की दुकान नज़र आ रही है जिसमे एक अप्रात में--

चने रखे हुए है तथा बाहर की तरफ एक व्यक्ति एक कोली में प्याज़ तथा चने डाले हुए खडा है जिसमें एक --

एक व्यक्ति नीले रंग की कमीज तथा नीले रंग की जींस पेहने हुए बैठा है जिसके आस --

परदे लगाए हुए है तथा सूरज की रौशनी बाहर से अंदर आ रही है पीछे की तरफ सफेद रंग के सुईचेस भी साफ देखे जा सकते है।

की हैं पीछे की तरफ हरियाली भी नज़र आ रही है काफी ज्यादा पेड़ पौधे नज़र आ रहे है आगे की तरफ --

एक महिला अध्यापक बच्चों का ड्राइंग देख रही है जोकि पीले रंग की साड़ी पहनी हुए खड़ी हैं।

गुलाबी रंग का थैले पकड़ा हुआ है चढ़ रहा है जिसने अपनी पीठ पर बैग लगाया हुआ है तथा काले रंग की जीन्स और--

तोलियां बांधे हुए बैठा है जिसने चेक दार कमीज तथा काले रंग की जीन्स डाली हुई है।

चट्टान भी नज़र आ रही है तथा पत्थर भी नज़र आ रहे है उसके अंदर एक व्यक्ति काले रंग की कमीज --

ग्रेस है तथा ऊपर की तरफ लाइटिंग तथा कुछ नतकासी देखी जा सकती है जिसके साथ ही --

जो सूंड है उसपर लाल रंग लगाया गया है तथा पीछे की और पुल देखा जा सकता है।

झुमके तथा लड़कियों के पहनने तथा सजने का सामान रखा हुआ है जिसके ऊपर पन्द्र लिखा हुआ है।

उसके साथ ही में एक और वैसी ही दुकान है ऊपर की तरफ सफ़ेद रंग की लाइटिंग लगाई हुई है।